यहाँ पर एक नदी हैगी और नदी के किनारे पर एक नाव खड़ी हुई हैगी।

तीनो औरतो ने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई है की और तीनो एक पोजिशन मे योगा कर रही है।

यह एक चर्च हैगा चर्च के ऊपर क्रिस्टियन का सिंबल बना हुआ हैगा।

--दीवाल पर काफी बैनर और पोस्टर लगे हुए हेनगें दीवाल पर ऑरेंज कलर का पैंट किया गया हैगा ।

यह एक बुक स्टोर है यह यहाँ का काफी फेमस बुक स्टोर हैगा यहाँ पर हर तरह की बुक नोटबुक मिल जाती हैगी और यहाँ पर बुक स्टोर के बाहर बुक स्टोर का बैनर भी लगा हुआ हैगा।

और अ साइड में दो-तीन चेयर रखी हुई है उनके बेठने के लिए सारे बच्चे खड़े होकर अपनी क्राफ्ट को पूरा कर रहे हेंगे प्रतियोगिता जीतने के लिए।